पेड़ पौधे दिख रहे हैं। मकान दिख रहे हैं। आकाश दिख रहा है।

इसमें आदमी दिख रहा है। पानी दिख रहा है ब्रिज बना --